ये कोई ऐसा हॉल का दृश्य है बहुत सारा चेयर लगा हुआ है | बहुत सारा व्हाइट चेयर है ऊपर मे लाइटिंग का भी बहुत सारा अरेजमेंट है ।

ये कोई पेट्रोल पंप का दृश्य है इसमें का बोर्ड दिख रहा है छोटा सा है ।

चारो बगल लाइट वगैरा जल रहा है दो पेट्रोल पम्प का मशीन दिख रहा है दिख रहा है इसमें --

ये कोई बहुत सुंदर बहुत सुन्दर मेले का दृश्य है जहाँ झूला ही झूला दिख रहा है | आसमान पूरा साफ है ।

कुछ सुन्दर दृश्य है कुछ लोग चोटिया पे दिखाई दे रहे है बहुत ही सुन्दर पेंटिंग बनी हुई है बहुत ही सुंदर अच्छा दृश्य है |